सफेद रंग की गाड़ी दिख रही है।

सोफे पर सफेद गुलाबी रंग का कपड़ा है।

रंग की चट्टानें दिख रही है।

हरे रंग के पेड़ दिख रहे हैं।